सीढ़ी भी है छत पे जाने के लिए पेड़ लगा हुआ है कुछ सुखी-सुखी डालियां भी हैं।

और प्रोग्राम तैयार किए हैं गुब्बारे लगे हुए हैं ब्लू लाल बहुत सारे कलर के हैं साड़ियाँ पहनी हुई लेडिज हैं जो की बहुत ही --